ये बिल्डिंग आके ये क्रीम और रेड कलर है इधर है--

ये आके ये एक बाजार है इस पे अ रेस्ट रेस्ट हाउस है।

अअ टर्मरिक हल्दी पाउडर चावल बहुत आइटम्स मिलता है इस पर आदमी लगू कोई भी नहीं है।

इधर आके टीचर है टीचर मास्क पहन को है दूसरे दो टीचर्स मास्क पेन के--